यहाँ पर एक जीम है जिसमे एक मशीन रखी हुई है और पीछे एक लड़का खड़ा है और ऊपर सीलिंग दिख रही है।

सफ़ेद कलर के पेंट से उसपे मोटे अक्षरों से कुछ लिखा गया है जो कंपनी का नाम हैं।

कई लाइनो में कुर्सियां हैं और सामने कुछ लोग खड़े हुए है ऊपर सीलिंग पर कुछ लाइटे दिख रही है।

यहाँ पर सामने एक सड़क दिखाई दे रहा है जो कच्चा है और इधर काफी बड़ी बिल्डिंग है।

यहां पर एक काफी लम्बी चौड़ी बिल्डिंग है जिसमे सफ ऊ एम कथहे सफ़ेद और हरे कलर का पैंट किया हुए है।

इसमें सफ़ेद कलर का पैंट है ऐसा लग रहा है यहां पे कार की धुलाई चल रही है और कार के उस तरफ कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

अगल -बगल काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और मंदिर के पीछे औ ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीले कलर का।

यहा पर दो कार खड़ी है जिसमे एक सफेद कलर का पेंट है कार मे और एक मेरे लाल कलर का पेंट है और ऊपर चद्दर की शीट दिख रही है।

और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जिसमे सफेद कलर के बादल छाए हुए है| काफी मनोरम दृश्य है यहां का--

यहा पर काफी सारी मशीने रखी हुई है और कुछ खम्भे है।

यहाँ पर समुद्र है जिसमे काफी सारा पानी दिखाई दे रहा है अगल- बगल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और बीच मे एक शिप दिखाई दे रही है।